यह छत पर आदमी- औरतें व्यायाम कर रही है। चट्टाइयाँ बिछी हुई है मकान दिख रहा है

खण्डेर है छोटे-छोटे घास दिख रहे हैं खंडर के ऊपर पेड़ दिख रहे हैं।

एक कोचिंग सेंटर है हरे सफेद ऑरेंज कलर के बलून लगे हैं और ऊपर भी लगे हुए हैं ग्रीन वाइट नीचे लगे हैं।

यह घाटी है और हरी हरी जमीन दिख रही है मिट्टी वाली जमीन है ऊपर जीने दिख रहे है।